और हरा रंग का कारपेट भी दिखाई दे रही है।

और एक लाल कलर का कारपेट भी दिखाई दे रही है।

और बहोत सारे चेयर भी दिखाई दे रही है।

और इस रेस्टोरेंट में सैन फ्रांसिस्को रेस्टोरेंट लिखा हुआ दी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक जगह दिखाई दे रही है।

और चार आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक आग भी दिखाई दे रहे हैं।

नीला आसमान भी दिखाई दे रही है।

और बहोत सारे घास भी दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

और दो आदमी भी दिखाई दे रहे है।

मुझे इस तस्वीर में एक झरना दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक बरा जगह दिखाई दे रही है।